दो आदमी एक बच्चा और एक औरत खड़ी है जिसने माक्स डाला हुआ है।

होटल के बाहर रेड कलर की चेयर्स लगी हुई हैं बहुत सारे गमले भी रखे हुए हैं।

वृक्ष वगैरा भी लगे हुए है यहां पर एक बिल्डिंग रेडी हो रही है यहां पर --